इसमें मुझे सलून दिख रहा है।

इसमें मुझे भारत पेट्रोलियम की पानी की टंकी दिख रही है।

इसमें मुझे जूते का शोरूम दिख रहा है।

इसमें मुझे एक डस्टबिन दिख रहा है।